की तस्वीर जो है। इसमें कुछ लोग बाइक स्कूटी पे जा रहे हैं। एक महिला भी स्कूटी पे बैठी हुई है। कुछ लोग जो है बाइक की ओर सीधे जा रहे है। ऊपर की तरफ --

पुल भी बनी हुई है। ट्रक भी है। एक व्यक्ति बाइक पे है जो ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। पीछे बैग भी लगी टांगी हुई है। सामने --

ये एक चर्च की फ़ोटो है जहां पे कुछ बच्चे बैठे है। सामने की मुझे इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दे रहा है जिन्हें व्यक्ति बैठा हुआ है।

गाछ उछ भी दिखाई दे रहा है। कुछ छोटे-छोटे घर भी है। आसमान पूरा ग्रे है। मिट्टी वहां की थोड़ी दिखाई दे रही है और जाल जैसा बना हुआ है वहां।

पूरा नीचे की पूरा जो जमीन है वो पूरी अनकंट्रस्टेड है वो भी बनी हुई नहीं नहीं है। बाइक का कलर भी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

ये एक बहोत बड़ी होर्डिंग है जिसपे तीन बच्चे पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जा की तस्वीर दिखाई दे रही है। एक साइड में एक बच्चा जो है --

एक अ महिला भी दिखाई दे रही है जो स्वेटर टोपी भी पहनी हुई है। के एस एफ ई किंग्स पिज्जा ली --

एक चर्च की तस्वीर लग रही है जहाँ पे लाइन से चेयर लगे हुए है। आगे की ओर में एक महिला भी दिखाई दे रही है। चर्च की सजावट बहोत अच्छी लग रही है।

हैंग किया हुआ है। कुर्ता का कलर जो है यलो है। कोट ब्लू कलर की भी दिखाई दे रही है। सारे रंगों की यहाँ पर है। आ तीन ही कुर्ता सेट दिखाई दे रहा है।

ये एक हेल्थ सेंटर दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ लोग खड़े हैं माक्स लगा के।

कुछ लोग पीछे की ओर भी खड़े है। एक महिला साड़ी पहनी हुई है। एक व्यक्ति जो है ब्लू कलर की लॉंग टी-शर्ट पहना हुआ है। सर पे कुछ लगाया हुआ है।

ये एक साड़ी की दुकान जैसा लग रहा है। दुकान बहोत बड़ी है। एक व्यक्ति है जो काउन्टर के पास खड़ा है। काउन्टर व्हाइट है। पूरी साड़ी सजी हुई है।

ये एक शादी का समारोह लग रहा है जहां पे सामने दो व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति जो है कोट पैन्ट पहना हुआ है। दूसरा व्यक्ति भी ब्लू कलर की कोट नीचे जीन्स पहने हुए है। हाथ में फोन लिए हुए है।

ये एक मंदिर की तस्वीर लग रही है। आस-पास छोटे शिव जी का शिवलिंग भी है। थोड़ी छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी है। हनुमान जी भी दिखाई दे रहे है।

दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। में एक व्यक्ति के अपने मसल्स दिखा रहे है। आस-पास बहोत-सी मशीनें भी रखी हुई हैं।

एक स्कूल सा लग रहा है जहां पे एक लड़की जो है अपने बैग लेकर के जा रही है। बीचों-बीच आस-पास पूरे प्लांट से सजा हुआ है।

एक हीरोइन की तस्वीर दिखाई दे रही है। हीरोइन जो है सामने की ओर देख रहा है। पूरे ब्राउन कलर की है। जमीन जो है वो दलदल की तरह दिखाई दे रही है। पीछे थोड़ी-सी घास भी दिखाई दे रही है।

घास से बंधी हुई है। कुछ दूर सर पे घर भी दिखाई दे रहा है। बच्चे जो है अलग-अलग कपड़े पहने हुए है। सीढ़ी के पास इनके हाथों में मग है।

आसमान दिखाई दे रहा है। एक बच्ची एक एक अंकल के साथ दिखाई दे रही। एक घर भी दिखाई दे रहा है आस-पास में।

ये एक संतूर का समारोह लग रहा है जहां पे बोहोत सारी चेयर रखी हुई है। एक व्यक्ति आगे की ओर जा रहा है और कुछ व्यक्ति आगे खड़ा है जो जो सजा हुआ पैंडल है वो --

ये तस्वीर में एक व्यक्ति जो है गाड़ी को ठीक कर रहा है। गाड़ी के पूरे ल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति जो है वो कुछ मशीन से गाड़ी के पार्ट्स को ठीक कर रहा है।

सामने की ओर देख रहा है। उसके गले में एक लॉकेट है। धागा है। हाथ में भी धागा पहने हुए है। उसके शर्ट में चार बटन है।

कुछ लोग है जो पैर मोड़ के बैठे हुए है। सर पे टोपी भी लगाए हुए हैं। कार्पेट का कलर जो है --

ऊपर जो पेट्रोल पंप के छज्जे जैसे बनी हुई है तार है स्ट्रीट लाइट है। कुछ व्यक्ति आस-पास पे खड़े हैं। ये एक धूप की सीन दिखाई दे रही है। आस-पास पेड़-पौधे भी हैं।

कुछ बच्चे माक्स मुंह में लगाए हैं। चेयर पे बैठे हुए हैं। पूरी सफेद उसमें कुछ लिखावट भी --

ये एक प्राकृतिक दृश्य लग रहा है जहां पे बहोत सारे पेड़-पौधे हैं। ऊपर का आसमान पूरा ग्रे है। पूरी हरियाली दिखाई दे रही है और पेड़-पौधे सूखे भी है कुछ हरे-भरे भी हैं।

फेद है। कांच लगी हुई है। अंदर में चेयर भी रखी हुई है और कार जो है कार बाहर से लॉक भी दिखाई दे रहा है।

जैसे एक बोट के ऊपर कुछ महिलाएं व्यक्ति खड़ी हैं। बोट जो है पानी की ओर चलने वाला है। आस-पास पूरा पहाड़ पानी दिखाई दे रहा है। मशीनें लगी हुई हैं। महिलाएं जो है सूट --

ये पुराने खंडहर जैसा लग रहा है। आस-पास कोई नहीं है। जमीन बे है जो पूरी थोड़ी-थोड़ी ग्रास लगी हुई है। पुरानी इमारत जैसा खंडहर है। उस --

पे भी घास उगे हुए हैं। पेड़-पौधे भी आस-पास में दिखाई दे रहे हैं। आसमान पूरा नीला दिखाई दे रहा है। यहां पे पूरा धूप --

ये एक कॉलोनी है। घर की तस्वीर लग रही है जहां सामने एक पेड़ है। घर की इमारतें पूरी पुरानी हैं। कलर भी पूरा डिस्कलर हो चुका है। आस-पास सीढ़ी सीढ़ी दिखाई दे रही हैं।

कुछ बच्चे जो हैं आर्ट एण्ड क्राफ्ट का काम कर रहे है यहाँ पर। पीछे पूरी ग्रिल लगी हुई है। बच्चे फ्रॉक पैंट पेहने हुए हैं येलो कलर की।

स्कूल में पेपर दिखाई दे रहा हैं। बच्चें हाथ में लिए हुए हैं। चार्ट पेपर भी आस-पास में दिखाई दे रहा है। आ कलर जो है --